और पीछे एक लाइट का भी खंभा जोड़ा गया है जो बिजली प्रदान करने में गांव गांव में मदद करता है।

ऐसा मंजर दिखाया गया है सब अपनी अपनी ओर आगे बढ़ रहे है।

रानीबाग दिखाया गया है रानीबाग में काफी खूबसूरत पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

का माहौल लग रहा है दिख रहा है।

कोई गार्डन दिखाया गया है गार्डन काफी देखने में सुंदर है गार्डन के अंदर--

खाने के टेबल लगे हुए दिख रहे हैं एक आदमी को --

सी बड़ी होटल का सीन दिखाया गया है एक बड़ी सी लॉबी दिखाई गई है जिसमें लास्ट में दो रूम दिखाए गए हैं।

एक गाड़ी दिखाई गई है जो शायद पेंटिंग के लिए आई है या तो फिर रिपेयरिंग काम से आई हुई है।

पुरा माहौल देख के लोनावला की बहोत याद आ रही है मुझे।

काफी सुंदर बाग बगीचा बताया गया हैं ये बाग बगीचा किसी टावर से कम नहीं।